एक बड़ा-सा जंगल है जंगल मे कुछ सुखी लकड़ियाँ है कुछ पहाड़ है जंगल मे एक बहुत हरा-भरा पेड़ पौधों का झुंड है।

एक बड़ा-सा घर बना हुआ है घर मे एक गेट लगा है गेट पे एक ताला --

सामने एक ट्रे है ट्रे में दो ग्लास है ग्लास में चाय है जो की भूरे कलर के कप हैं।